योगा योगा हमें प्रतिदिन करना चाहिए। उसको करने से हमारा शरीर फुर्तीलापन रहता है।

सफर करने में बहोत आनंद आता है और हमें भी बहोत अच्छी लगती है नाव में बैठने पर।

इस चित्र को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह एक मस्जिद हैमस्जिद में ये लोग दर्शन करने गए हैं मस्जिद मुसलमानों का एक मंदिर है |

जिस चीज को हम म्यूजियम में नहीं जानते या फिर कभी सुने नहीं होते उस चीज की भी हमें जानकारी होती है।